एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो मे मुझे चार पांच दुकाने दिखाई दे रहे हैं इस फोटो मे मुझे अंग्रेजी शराब दुकान दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक शॉप नजर आ रही है।

मुझे इस फोटो पर कुछ लोग नजर आ रहे है।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

मुझे इस फोटो पर फूलों से सजावट--

इस फोटो पर मुझे जाली नजर आ रही है इस फोटो पर मुझे एक व्यक्ति नजर आ रहा है।

इस फोटो पर मुझे कुछ लोहे दिखाई दे रहें हैं इस फोटो पर मुझे एक रैट पड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो पर मुझे एक दुकान दिखाई दे रही हैं। इस फोटो पर मुझे शैंपू नजर आ रहा हैं।

इस फोटो पर मुझे कुछ जंपिंग नजर आ रही हैं।

इस फोटो पर मुझे कुछ फर्श नजर आ रहा है।